यह एक कॉलेज है और इसमें गेट भी लगा हुआ। लोहे का गेट है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बनी हैं और पौधे भी लगे हैं हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और --